यह क्लासरूम का फोटो है जिसे की देखा जा रहा हैं।

यह किसी का रैली है जहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है।

सारे लोग पूजा शायद पूजा करने जा रहे हैं।

या शायद प्रोग्राम होगा और बाकी लोग खड़े हैं।

चारा दिया गया है खाने के लिए यहां भेड़ बकरी को खिलाते हैं और आगे चलके इन्हें बेचते हैं।

यहां पे सामने की ओर पोस्टर लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है।

और वह बच्चा अपनी मां की गोद में है उसके पिता बगल में है और कई सारे लोग उसके बर्थडे में आए हुए हैं।

स्कूल का रंग जो कि व्हाइट है सामने की ओर से और पहले से उसका कलर नहीं किया गया है और ब्लू कलर का पट्टी मारा गया है।